साथ में यहां पास एक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है।

इस फोटो पे मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है साथ मे यहां पल बहोत सी दुकानें है।

यहाँ पर बड़े से पेड़ के नीचे बहोत सारी कुर्सी रखीं हुई हैं और कुछ बैठने के लिए हैं।

इस फोटो पे मुझे बहोत सारे लोग तार बाउंड्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

चारों ओर घर बनाए जा रहे हैं यहां छोटी-छोटी घास उगी हुई है नीचे की तरफ में ईंटें लगाए जा रहे हैं और यहां पास एक गड्ढा खोदा गया है।

छोटा सा घर बना हुआ है घर के बाहर साइड बहोत बड़े पेड़ लगे हुए है।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

यहां पर बहुत सारे पंखे और पर्दे लगाए गए हैं यहां कुछ दवाइयों की बोतलें और दवाइयां रखी हुई हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे टेडी बेयर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक बहोत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारे पत्थर के आदि कट आए गए हैं साथ में यहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हैं।